और महजिद में बोहुत सारे लोग जाते हैं।

यह एक पार्क का फोटो दिखाया गया है।

आज यहाँ पे कुछ फंक्शन आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आये हुए हैं ।

मै इस ऐ.टी.एम. पेसा उठाने के लिए यह बहुत आसानी तरीका से पैसा --